इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है और आसमान में सूरज ढलता नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर नर्सरी दिखाई दे रही है और पौधों में फूल नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहाँ पर रंग बिरंगे चीज़े दिखाई दे रही हैं और ऊपर बेल नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिख रहा है और सड़क पर कार चलती नजर आ रही है।

इस इमेज मे यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और लाइटें जलती नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर झूले नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर छत बनने का काम चल रहा है और कुछ मजदूर दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है और कुछ लोग घूमते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है और ऊपर कुछ बलून्स नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर पहाड़ दिखाई रहे हैं और बाउंड्री पर बंदर बैठे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक महल दिखाई दे रहा है और कुछ लाइटें जलती नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर मंदिर दिखाई दे रहा है और पुजारी नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है और एक लड़का कसरत करता नजर आ रहा है।

इस इमेज मे यहां पर एक गेस्ट हाउस दिखाई दे रहा है बाहर कार खड़ी नज़र आ रही है।